एक लेडिस भी खड़े होकर एक्सरसाइज कर रही है। एक बैठा हुआ है ।

एक काँच का प्लेट रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस खेत में कुछ दूर तक जुताई किया गया--

एक ओटो नजर आ रहा है एक कार भी खड़ा की गई है।

यहां एक मकान नजर आ रहा है।

यहां पर करकट का बना हुआ मकान नजर आ रहा है।

यहां मूर्ति का दुकान नजर आ रहा है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जो हाथ ऊपर किए हुए है ।

यहां एक कार्यालय नजर आ रहा है।

व्हाइट रंग का दीवाल पेंट किया हुआ है।

यहां छोटा सा हॉस्पिटल नजर आ रहा है।

यहां एक जिम सेंटर नजर आ रहा है।

सैलून में शीशे का दरवाजा लगा हुआ है।

यहां एक बड़ी सी खेल का मैदान नजर आ रहा है।

एक ग्रील भी लगाया हुआ है बाहर से एक बैनर भी लगा हुआ है।